ये फ़ोटो में हमे एक गली दिखे रही हैएक रॉकरेड रोड है जहां पर और मल्टी स्टोर बुलिडिंग दिख रही है यहां नीचे जो है शेड बना हुआ है।

अह ये चित्र में हमे एक जिम की फोटो दिख रही है यह पर एक जिम है और जिम में यहाँ के उपकरण रखे हुए है।

कई तरह की चेयर्स रखी हुई है और यहाँ पे हमे कुछ लोग दिख रहे है सामने कबट बने हुए है और उसमे आईने लगे हुए है कांच लगे है एक व्यक्ति वह खड़ा हुआ दिखा रहा है और भी लोग खड़े है।

अ इस चित्र में हमे एक किराणा स्टोर दिख रहा हैं किराणा स्टोर के अन्दर का फोटो हैं यहाँ पर एक फ्रिज रखा हुआ हैं सामने बहोत से पाउच लटक रहे है।

दीवार का रंग लाल है और यहाँ पर कुछ कुर्सियां रखी हुई है और ऊपर छत पर डिज़ाइन बनी हैं पर्पल कलर की और हमे काउंटर --

यहाँ पर हमे इलेक्ट्रॉनिक कांटा दिख रहा है कांटे से किसी समान को तोला जा रहा है ये सफेद रंग के बेगस है यहाँ पर कई सारे बेगस रखे हुए इन मे कुछ समान भरा है। ।

और यहाँ पर गमले रखे हुए है गमलो में पौधे लगे हुए है और लाइंस से यहाँ पर बेन्चिस रखे हुए है और स्टूडेंट खड़े हुए हैं ये लोग कुछ क्राफ्ट बना रहे हैं ये क्राफ्ट का मटेरियल रखा हुआ है कैंची पेपर कलर और एक सिस्टर खड़ी हुई है।

और इस चित्र में एक भव्य मंदिर बना हुआ है जो सुनहरे रंग से बना हुआ है असके आसपास बिल्डिंग्स बनी हुई है।

और कुछ पोस्टर लगे हुए है सामने एक बेंच है उस पर एक दम्पति बैठा हुआ दिखाई दे रहा है दीवार के ऊपर कुछ जागरूकता के बीमारी से जुड़े हुए कुछ पोस्टर लगे लगे हुए नज़र आ रहे--

साईकल खड़ी है और हमें लोहे का एक गेट दिख रहा है जिसे पर कोई बोर्ड लगा है और घर के ऊपर हमें नीले रंग की एक पट्टी बनी हुई दिख रही है उस पर एक बैंक का नाम लिखा हुआ है उसके ऊपर हमें बिजली की तारे दिख रही है पीछे हमें एक टावर दिख रहा है और पेड़ लगे हुए है ।

यहा पर हमने एक रोड नजर आ रहा है और ये त्रिराहा है रोड पर में रीक्सा दिख रहा है कुछ बाइक दिख रही है और बहोत सी गाड़िया दिख रही है और कुछ बिल्डिंग्स दिख रही है।